यह चित्र एक जिम का चित्र है जहां पर बहोत सारी जीमींग इक्विपमेंटस् दिखाई दे रहे हैं जिससे इंसान--

फूलों से सजाया भी है और यहां पर बहुत सारे इंसान भी दिखाई दे रहे हैं जो मंदिर आए हैं।